यहाँ पर एक रखी हुई है यहाँ पर एक स्कूटी खड़ी हुई है एक टेम्पू खड़ा है खड़ी हुई है एक बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है अंदर बहुत सारे कपडे रखे हुए है देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैमॉल बहोत अच्छा लग रहा --

और इसमें एक बाहर गाड़ी हुई है और इसमें दो काँच के दरवाजे लगे हुए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है पीछे फील्ड दिखाई दे रहे है दो तार दिखाई दे रहे है देखने में बहुत अच्छा लग रहा हैं।

मूवी में हमको एक होटल दिखाई दे रहा है में हमको एक शटर दिखाई दे रही है जिसमे चश्मा घर लिखा हुआ है फिल्म में हमको होटल कल्पना लिखा दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में हमे दो दरवाजे दिखाई दे रहे है इस इमेज में हमे चार पांच पेढ़े दिखाई दे रहे है इस इमेज में हमको यल्लो कलर का बहुत सारे कबूतर दिखाई दे रहे है इस इमेज में एक --

यह देखने में बोहत अच्छा लग रहा है इस रूम में ब्लैकबोर्ड लगा हुआ है एक शटर दिखाई दे रही है।